सफेद सफेद बादल भी दिख रहे हैं।

लोहे की जाल भी दिखाई दे रहे है और कुछ टॉयलेट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़की झाड़ू मार रही है।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

मुझे इस तस्वीर में एक फिल नजर आ रहा है।

बंबू से बनाया हुआ एक ब्रिज भी नजर आ रहा है।

कुछ लोग बैठ रहे हैं और कुछ लोग चल रहे है बहोत सारे छोटे छोटे लाइंस भी दिखाई दे रहे है।